यहाँ पे गंगा मैया बह रही है ।

बहुत से नावत नाव दिख रहे हैं चलते हुए --

और यहां पे मछली खटाटे हैं।

इसमें बहुत सारे अलग बलग के बूके मिलते हैं कॉपियाँ मिलती है और एक --

और आगे फूल लगाया हुआ है --

और एक खुबसूरत सा नज़ारा --

रोज पूजा होते है ये खूबसूरत सा जगह है खुबसूरत सा --

और यहाँ पे बहुत सा लड़के खेल रहे हैं बहुत सा घूम रहे हैं।

बड़े-बड़े पुल पर बहुत से आदमी दिख --